दिखाई दे रहा है एक बड़ा फैक्ट्री --

मुझे इस चित्र में एक बड़ा--

ऑफिस दिखाई दे रहा है इस ऑफिस में बहोत सारे केबिन बने हुए--

इन चेयर्स पर बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं।

अलग अलग प्रकार के पेड़ और पौधे--

कुछ ग्लासेस राउंड ग्लासेस दिखाई दे रहे हैं। इन ग्लासेस के सामने चेयर्स रखी हुई है।

एक बड़ी टेबल और कुछ चेयर्स लगी हुई है इस टेबल पर--

एक गार्डन इस गार्डन में एक सोफा --

इस रूम मे एक डबल बेड लगा हुआ है।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

चित्र में दिखाई दे रहा है एक रेस्टोरेंट --

इस मेलेमें बहोत बड़े बड़े--

घूम रहे हैं इस मेले में बहुत सारे स्टॉल लगे हुए--

इस वेटिंग हॉल में बहुत सारी--

चेयर्स लगी हुई है इस वेटिंग हॉल के पीछे एक रिसेप्शन बना हुआ है।

पिक्चर में दिखाई दे रहा है एक हॉल इस हॉल में एक सोफा सेट लगा हुआ है और दो चेयर --

रखी हुई है एक सेंटर टेबल भी।

तरह तरह के पेड़ पौधे लगे हुए है।

कुछ लाइट के लेंस वाले खंभे भी दिखाई दे रहे हैं।

इस रोड के दोनों किनारे व्हाईट कलर की--

और यहाँ पे बहुत सारे अलग-अलग कलर के --

बड़े बड़े बॉल दिखाई दे रहें हैं।

यह एक टायर का शोरूम है इस शोरूम में--

बैग्स दिख रही हैं यह बैग्स अलग अलग कलर की हैं।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

चल रही है इन बोटिंग को कुछ पर्यटक बोट चला रहे हैं।

फोर व्हीलर इस फोर व्हीलर पर पीछे लोडिंग --

यह शॉप एक आटो डील की है।